यहां पर बेंचेज रखे हुए है इन बेंचो के ऊपर काफी सामान रखा हुआ है यहां पर लोग कुछ काम कर रहे हैं।

इमेज में दो दुकाने नज़र आ रही है एक दुकान पे तीन बंदे खड़े हुए है और यहाँ पर दुकान के अंदर बोहोत सारा सामान रखा हुआ है।

इस इमेज में तीन बंदे दिखाई दे रहे हैं यह बंदे कुछ काम कर रहे हैं इन बंदों ने हाथ में कुछ पड़ा हुआ है।

यहां पर काफी पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहां पर जमीन पर घास यूकी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में काफी लोग दिखाई दे रहे है यहां पर छत पर काफी लाइट्स लगी हुई है कुछ लोग बैठे हुए है और कुछ लोग यहां पर खड़े हुए है।